कांच में हमें बहार एक गाडी खड़ी हुई दिख रही है सैलून के बहार।

सामने एक पेड़ है गोल कोटा बना हुआ चबूतरा उसको स्टील की जाली से पूरा कवर --

यह हुए जाली लगी हुई है पेड़ पर पेड़ के अंदर होटल --

अंदर दुकान में खोकके में साड़ियाँ जमी हुई है ये और भी कपडे जमे हुए दिख रहे है ये।

साड़ी कपड़े की दुकान है ये साड़ियां दिखाई दे रही हैं रखी हुई बॉक्स में भी साड़ी रखी हुई --

ये रोड़ है रोड़ के साइड में कार खड़ी हुई जिसके दोनों गेट खुले हुए हैं तीन लोग खड़े हुए दिखाई दे रहें हैं यहाँ कार के पास में।

सामने बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है हमें पास में पेड़ भी दिखाई देरा है।

अंदर से एक मकान दिखाई दे रहा है बना हुआ बाउंड्री हो रही है बीच में बाउंड्री हो रही है।

पेड़-पौधे लगे दिख रहें हैं ये बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहें हैं साइड में एक और बिल्डिंग दिख रही है सुन्दर सा है बना हुआ दी --

एक स्टोरी पर हमें चर्च दिख रहा है ये छोटा सा पतला सा रास्ता दिखाई दे रहा है दोनों तरफ हरियाली दिख रही है।

यह झोपड़ियां बनी-बनी दिख रहीं है।